यहाँ पर रस्ते में कुछ गमले और कुछ बड़े-बड़े पेड़ लगे हुए हैं यहाँ अलग-अलग प्रकार के झंडे भी लगे हैं यहाँ रोड पर बाइक खड़ी है।

यहाँ हमे खिड़की और दरवाजा भी दिख रहे हैं कुछ बच्चे कॉरीडोर मे खड़े हुए भी दिखाई दे --